यहाँ पे एक मूर्ति है फ्लावर्स के उपर मूर्ति है छोटा मूर्ति है फिर छोटा मूर्ति है ।

वहाँ वाइट कलर का स्काई कितना खूबसूरत पिक है।

कौन चलवाया हुआ जिला प्रशासन विधायक साहब कुछ ऐसा हे दिख रहा है।